पेन भी है और ग्रे मिक्की माउस का स्टीकर भी लगा हुआ है | पुरे दीवार पर एक ड्रैगन है एक शेफ का स्टीकर है इसमें ।

चर में एक पुल है पुल मे दो लोग नहा भी रहे हैं। एक लेडीज है। एक बिल्डिंग है जिसके नीचे पुल है। वाइट रंग की बिल्डिंग है और एक चेयर है और दो चेयर है और एक बगल में एक लड़का भी खड़ा हुआ है।